बीच में एक गामला रखा हुआ है गामला के चारों और बो वाड़ वाटर रखी हुई है और आदमी एक दूसरे से बात कर रहा है सामने ही एक आदमी खड़ा हो कर प्रेजेंटेशन दे रहा है।